मी बैठे हुए है देखने पर लग रहा है की यहा पे कोई यात्रा निकल रही है ऊपर की साइड मे लाइन गयी हुई है तार गए हुए है और बिल्डिंग बनी है।

उसके ऊपर एक कछुआ है कछुए की ऊपर की साइड जो है मोटा परत बना हुआ है और सामने की और में उसके मोटे मोटे पैर दिखाई दे रहे है उसकी गर्दन भी दिखाई दे रही है।

यहा पर बहुत बड़ा हाॅल दिखाई दे रहा है हाॅल मे काफी जो ये चैर लगाई गई है और आसपास मे कुछ लोग भी दिख रहे है।

यहाँ पर पाँच लड़कियां दिख रही है देखने पर लग रहा है की वे डान्स कर रही है और देखने पर ये भी लग रहा है की ये कत्थक डान्स है जिसमे लड़कियां सजी हुई है।

इसमें कुछ लोग डेकोरेशन कर रहे हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं। एक बड़ा सा चित्र बना हुआ है जोकी गणेश जी का है। डेकोरेशन जो है दिल की आकृति बनाई गई है ऊपर के साइड में काफी लाइटस लगाई गई है।

बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो लोग हैं वह सामान वहा रखे हुए हैं हाथों में और कुछ पर्ची भी रखी है देखने में लग रहा है यहाँ पर कुछ काम चल रहा है जहा पर एक गल्ला बेचा जाता है।

यहाँ पर बहुत बड़ी टेबल पड़ी हुई है टेबल के ऊपर कुछ दर और चादर बिछाई गई है और उस पर पेन कापी भी रखी गई है और कुछ बोतल भी रखी गई है। चेयर भी लगाई गई है जोकि काले कलर की है।